बाहर पेड़ भी लगे हैं उसपे लाइटें भी लगी है।

बिल्डिंग की परछाई भी दिख रही है।

बाहर पीली एक्टिवा भी खड़ी है।

यह तस्वीर किसी पार्टी या फंक्शन की है।

अंदर बहुत सारी पिक्चर लगी हुई है।

ऊपर सजावट भी हो रखी है।

यह तस्वीर महेश्वरी सेवा सदन--

इस तस्वीर में एक लड़का खड़ा हुआ है।

यहां पर नीला कारपेट बीछा हुआ है।

इसमें पेड़-पौधे भी लगे हुए हैं।

यह तस्वीर एक दुकान की है।